इस चित्र में हमें जलेबियाँ दिख रही हैं ऑरेंज कलर की है टील की ट्रे पर रखी है ट्रे के पिछे एक कड़ाई है जो की ब्लैक कलर में है रूम में ब्लैक कलर है।

इस चित्र मे हमे एक बतख दिख रहा है जिसके पेरो का कलर पीला है इसके चोंच का कलर पीला है।

इस चित्र में हमे एक लड़का दिखाई दे रहा है साइड में बहुत बड़ा पेड़ है जोकि नीला है पीला है और हरे कलर मा है।

साइड में हमें एक अ लड़का जोकि पैंट पहना हुआ है और ओ एक्सरसाइज़िंग कर रहा है उसने शर्ट और पैंट पहना है।

साइड में पौधे लगे हुए है फूलो फूलो के जो की रेड कलर में हमे दिख रहे है बड़े-बड़े पेड़ है ।